और यहां बहोत सारे ऑनलाइन एम_पी ऑनलाइन के काम किए जाते हैं।

कार रेसिंग करते हुए नजर आ रहे है बहोत सारी लाइट भी दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारे बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं और कुछ बच्चे देख रहे हैं।

इसके अंदर पानी है और यह बहोत खूबसूरत दिखाई दे रहा है।

हॉस्पिटल की दिख रही है जहां एक डॉक्टर बैठते है।

लाइट्स ऑफ है और ग्रीन और रेड कलर की लाइट चालू है।

बैठकर अपने फोटोस खींच रहे हैं।

यह यह इमेज एक आसक्रीम पार्लर की दिख रही हैं जहाँ--

और कुछ दुकान के काउंटर पर खड़े हुए हैं।

यह यह इमेज एक चर्च की--

दिख रहे हैं और उनके पीछे सिस्टर भी--

टेंपल पर बहुत सी मूर्तियां हैं बड़ी बड़ी मंदिर की।

ये और बहोत से लोग इनकी पूजा करने जा रहे हैं।

जहां पर दो गार्ड खड़े हुए हैं और रास्ता जा रहा है जो बहोत साफ है।

गार्डन की दिख रही है जहां फाउंटेन है जिसमें बहोत सारे डॉल्फिन के स्टैचू में और--

एक सिस्टर बच्चों का सामान देख रही है और टेबल पर बहोत सारे सामान पड़े हैं अ--